ये कंगारू जैसे दिखाई दे रहे हैं।

यह दो मंजिल का बना हुआ है जो नारंगी और गुलाबी रंग से --

जो की सजाई गई हुई है यह इमारत काफी बड़ी और सुसज्जित है ।

इस अध बनी ईमारत के सामने सामान पड़ा है मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ है।

यह शायद कोई मीट की दुकान है वहाँ सामने कुछ कुर्सियाँ रखी हैं जो की लाल रंग की है ।

और नीचे दोकाने बनी हुई है। इस दुकानों के आगे सीढ़ियां बनी हुई है और कुछ वाहन खड़े है।